बाहर की तरफ एक गेट बनाया हुआ है।

यह फोटो किसी बैंक के ए_टी_म की दिखाई दे रही है।